ढक्कन की तरह दिखाई दे रहा है। छेद दिखाई दे रहा है। इसका आकार बहोत बड़ा है। आस - पास बहोत कुछ दिखाई दे रहा है। लोहे की छड़ भी --

बड़े-बड़े अक्षर में लिखा हुवा है इंग्लिश में भी लिखा है हिंदी में भी लिखा --

पीले कलर का है। एक कढ़ाई भी दिखाई दे रही है। जलेबी का आकार जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई दे रहा है।

चक्का भी दिखाई दे रहा है नीचे जो है ईटा पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

एक कौवा भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ जो है सूखा है कौवा काले रंग का दिखाई --

लिवर की दवाई हैं। कुछ फेफड़ा का दवाई है। कुछ दाँत की दवाईयाँ हैं। आयुर्वेदिक दवाईयाँ देख के लग रही हैं। सामने टिफिन भी रखा हुवा है। पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इन्वर्टर भी दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति सामने की ओर आ रहा है ब्लू कलर की कार भी दिखाई दे --

मेरे सामने तस्वीर है उस तस्वीर में एक पीछे की तरफ टीवी भी लगी हुवी है ।